यह बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है जो की पुरी तरह बैलून से सजा हुआ है कुछ बैलून लाल है कुछ पीले कुछ उजले हैं इसका एक कैश काउंटर है।

यहाँ पर यात्री बैठ कर के बस का इंतिजर करते कर रहें हैं कुछ व्यय बस के उपर लगेज रखा हुआ लगेज बना हुआ है --

यह बॉम्बे फूट वेर की दुकान है जिसके बगल में एक राधा रानी ऑटो स्पेयर की दुकान है जो की बंद है दुकान के आगे में शेड गिरा हुआ है ।

रखी हुई है और ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है जैसा ये सड़क के किनारे सब्जी की मंडी --